अब ये देखो आपने सामने देखा ही है।

इतने बड़े बड़े देखो लोहे के बेंचेस हैं और ये रोड पर हैं।

तार तोर गिरी हुईं हैं और सामान भी गिरा है।

वहां पर सामने देखो एक अलमारी सी भी बनी हुई है छोटी सी और पीछे लाइट लूइट जस रही हैं।

और इसमें एक ऊपर आपको आगे की तरफ बॉक्स दिख रहा है।

इसमें आपको देखो दो लेडीज दिख रही हैं जिसने साड़ी पहन रखी है।

ये पर्पल कलर मे है देखो निचे इतने सारे इनके बॉक्सेस भी रखे हुए ब्राउन कलर के--

ये देखो आपको व्हाइट में भी आपको पन्निया सी दिख रही हैं कुछ इसमें समान हैं और ये पैक कर रखी हैं दोनों --

कुछ पड़े हैं टेबल पर देखो बोतलें वगैरा पड़ी है सामने--

अंदर भी वाइट कलर का गेट दिखा रहा है इसके साथ में एक और दुकान है जिसका रंग है येलो कलर ।

ये देखो इसमें आपको रंग बिरंगी लाइटें दिख रही होंगी लगी हुई सामने बिल्कुल--

और नीचे देखो टेंट लगे हुए हैं अलग अलग कलर के।

सामने आपको दिख रहा होगा देखो ऊपर कितने पौधे से उगे पड़े हैं पेड़ उगे पड़े हैं हरे हरे रंग के--

और एक लेडिस अंदर जा रही है अपने बच्चे को लेकर जिसके हाथ में थैली है।

जहाँ पेड़ लगे होते हैं उसके नीचे के जो हिस्सा होता हैं वह लकड़ी ही होती हैं इतनी मोटी मोटी --

और एक कुछ रस्सी पे इन्हें ने टंगा रखें हैं कपड़े वगैरा और पेड़ दिख रहे हैं।

नीचे घास दिख रही है सामने आपको क्या दिख रहा है?